यह जंगल है ये बहुत बड़ा-बड़ा सा वृक्ष है यहाँ पर बहुत सारे जी जानवर है बहुत बड़ा वाला घास भी लगता है सब खा खाना खा रहे हैं भोजन खा रहे हैं।